जैसे की एक स्टेकचर में देखा पा रही है।

जो बहोत बड़ा है और यहां पर बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

कि हमें इस पिक्चर के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

एक मुर्गी फार्म दिखाई दे रहा।